ग्राउंड में जगह जगह गड्ढे खोदे हुए हैं और मिट्टी टोजो कि कैसे बनाई जाती है यहां पर शायद ईंटों के भट्टे लगे हुए हैं ।-

पन्नी से इस दुकान को बनाया गया --